यहां पर कई सारी किताबें रखी हैं।

और बैठने के लिए टेबल कुर्सियां लगी हुई हैं।

ये एक केक की शॉप है।

ये एक अ तितली साड़ी हाउस है।

सामने की तरफ कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।